बहुत ही अच्छा इसमें एम_सी_एम_आई_टी संस्कार जिप्सा सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।

ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोरबा गोपालपुर का है--

यह ईसाई समुदाय के लिए बहुत बड़ा पर्व की तरह रहता है।

जो बहुत बड़ा रहता है उसमें बड़े-बड़े मशीन और क्रैन सब का काम किया जाता है।

ये हमारे कोरबा जिला के प्रथम मेडिकल कॉलेज का गेट है इसमें हमारे फर्स्ट बैच के स्टू मेडिकल स्टूडेंट इस वर्ष --

इस चित्र मे एक होटल का एक रूम दिख रहा है बहुत ही अच्छा सजावट है वहाँ के जो बेंच लगी है टेबल लगी हैं।

इस चित्र मे हमारे पॉवर प्लांट्स को भी दर्शाते है लेकिन उसके अंदर जो गार्डन बनी होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है उसको भी दर्शाया गया --